और एक गाड़ी लगा हुआ है।

पेड़ के किनारे भी लाइन गया हुआ है।

ये दोनों पत्नी-पति है और इसने एक हवा-हवाई --

ऑटो किने हैं जो दोनों मिलकर फोटो खिचवा रही है।

और दिखने में दोनों बहुत सा क्यूट है।

औरत ने लाल साड़ी पहना हुआ है आदमी --

इ इने एक मकान है जो दिखने में बहुत अच्छा लगा और फूल से सजावा हुआ है।

आदमी वहाँ पे खरीदने के लिए पहुँचा आए --

मरीज पड़-पड़ा हुआ है।

जो बहुत अच्छा लग रहा और --

लकीर का वहाँ-वहाँअच्छा टाइप्स का --